यह एक मैदान है मैदान के चारो लंग-लोग खड़े है तमाम टीम है और कोई खेल का आयोजन किया जा रहा है।